सीमेंटेड बाँधा गया है और बहुत साफ सुथरा है और भगवान सूर्य भगवान का रोशनी नदी में --

ये दोनों तरफ से दीवाल है का गेट है और ये संयम हॉस्पिटल जो लिखा हुआ है।

ये इधर गेट जैसे बनाया गया है दीवाल बना के और रोड है।

बोर्ड भी लगा है रिसेप्शन पर दो लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं यहां--

ये हॉस्पिटल का फार्माशिष्ट लैब है यहाँ पे काफी सारा बोर्ड पेंटिंग वगैरह भी लगे हुए हैं।

गाड़ियां खड़ी हैं लोग भी खड़े हैं सीढ़ियों से लोग उतर रहे हैं और र बहुत ज्यादा भीड़ है।

दरवाजा पतला है ऊपर से लाइटें वगैरह भी लगी हैं डेकोरेशन अच्छा किया गया है।

और टेबल वगैरह भी सजाए हैं इस पे राष्ट्रीय पेड़ पौधे वगैरह का अम्म बताया जा रहा है बच्चों को --

और ये फीता लगा हुआ है यहां पे कोई गेस्ट आने वाले हैं चेयर भी लगा हुआ है बहोत सारे लोग--

और ये हॉरिक्स वगैरह चटनी मसाला जो भी भरा हुआ है दुकान में नीचे भी सामान पड़े हुए हैं।

यहाँ पे कार सर्विशिंग की जा रही है बहुत सारी कारें खड़ी हैं।

और यहां पे जिओ का सिम वगैरा जिओ से संबंधित कार्य होते है।

और ऊपर बहुत सारे लोग हैं मजदूर वगैरह और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं बहुत सारा और ढलाई का काम --

ये शोरूम है कपड़ा वगैरा का और स्टैंड पे भी कपड़ा रखा गया है।

बहुत सारे रेक भी बने हुए हैं उस पे भी कपड़ा रखा गया है का --

बीच में खंभा भी लगा है लाइट वगैरह का फ्लावर प्लांट भी सजे हुए हैं बहुत सुंदर शोरूम है नीचे भी कपड़ा र --

ये सब लगाया गया है बहुत सुंदर टाइल्स है और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है पेंटिंग बहुत --